meet the gimp के tutorial में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
अब tutorial शुरू करते हैं एक mail के साथ जो मुझे mail
मुझे यह email david वैनस्लेन david vansalan द्वारा प्राप्त हुआ और उसने मुझसे पुछा कि gimp में ज्योमेट्रिक्स के साथ सरल चित्र को कैसे बनाते हैं
अतः सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं यानी सीधी line के साथ
एक सीधी line को बनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर आप यहाँ एक point बना लें और shift की दबाएं और एक अन्य point बनायें तो आप आसानी से एक सीधी line बना सकते हैं
अतः ये सीधी लाइनें हैं
अनडू करने के लिए ctrl + z दबाएं
square थोड़ा अधिक कठिन है
tool बॉक्स पर जाएँ और rectangle tool चुनें
और aspect ratio को 3 by 3 रखें
अतः यह square होना चाहिए
अब मेरे पास एक square selection है इसलिए edit पर जाएँ stroke selection
मैं यहाँ कुछ बदलाव कर सकती हूँ
मैं line की चौड़ाई निश्चित कर सकती हूँ या मैं paint tool प्रयोग कर सकती हूँ और मैं paint tool में paint brush चुनती हूँ और stroke पर click करती हूँ
और यहाँ आपके पास आपका square है
अगर मैं इस square को भरना चाहती हूँ यह आसान है बस यहाँ colour palet पर जाएँ और काले रंग को square में drag करें
यही प्रक्रिया ellipse selection के साथ की जा सकती है
मैं ellipse चुन सकती हूँ और edit पर जाएँ और stroke selection चुनें
ज़्यादा कठिन चित्रों के लिए path tool चुनें
मैं points बनाकर path बना सकती हूँ और जब मैं आखिरी point पर click करती हूँ तो मेरा path पूरा हो जाता है
फिर मैं edit के लिए यहाँ जा सकती हूँ और जैसे आप चाहते हैं इन handles को रूपांतरित करना शुरू कर सकती हूँ
आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और समझ सकते हैं
यह बहुत आसान है
आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो है stroke the path
और यहाँ मुझे वही विकल्प मिलते हैं और जब मैं stroke पर click करती हूँ तो मेरे पास एक पूर्ण line है
यह सीधी line नहीं है पर पूर्ण line है
और इस सप्ताह के लिए इतना ही था
अधिक जानकारी के लिए
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद